कुछ लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है एक अलमीरा दिखाई--

और एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके चेहरे पर ब्ल--

बहोत से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और नीला आसमान दिखाई दे रहा है।